पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली भी की गई है जो और भी अच्छी लग रही है यहां पर लोग काम कर--

ये साफ सफाई बहोत अच्छी की गई है ए_सी भी लगी हुई है सफेद कलर की मेज भी दिखाई दे रही है।

किसी शीशे के इससे भी किया हुआ है बाईकें भी खड़ी हुई हैं कुछ बाहर की तरफ--

और बहुत अच्छे यहां पर लोग आते हैं काम को करने के लिए यहां पर शाम के टाइम बहुत ही भीड़ रहती है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है यहां पर लोग काम क--

या एक खेत है इसमें मूंजी बो रखी है वो पेड़ एक पेड़ खड़ा हुआ है जो कि आम का पेड़ है जो बहुत ही बड़ा पेड़ लग रहा है दिखाई दे रहा है।

और एक डोर पे पेग और पेड़ खड़ा हुआ है जोकि तिरछा पेड़ है और उसके सामने से मुझे बहोत ही बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पर--

और यहां पर एक होम बनाया हुआ है जो की देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक दादा हरिदास का स्पेस पर्सन वर्कशॉप है जो कि बहुत अच्छी दुकान है यहां पर एक स्कूटी भी खड़ी हुई है यहां पर सही भी करों का इलाज रहता है।

और पीछे की बिल्डिंग पर पेंट हुआ हुआ है जो कि पीले कलर का पेंट हुआ हुआ है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है उसके--

ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एक कार है जो कि सुजुकी है जो कि यू_पी का नंबर --